यहा सभी प्रकार के खाने की चीज मिलती हैं और यहां--

जमीन को खोद रहा है हथौरे छेनी सब दिख रहे हैं नए नए सिरमेंट दिख रहा है।

यहां एक गार्डन है यहां नित्य हो रहा है।

यह एक गार्डन है जहाँ बहोत से चेयर दिख रहे है और एक बिजली का तार भी है और एक कार भी है और एक गाड़ी भी है।

यहां एक क्रिश्चियन शादी है जहां एक इंसान टोपी पेहने दिख रहा है और बहोत से लोग--

क कार खरीदने के लिए आए हुए हैं जहां लोग समझ रहे हैं बता रहा है एक इंसान।

यहाँ मनी कार्ड मनाया जाता हैं जहाँ आप देख सकते हैं एक साइकल भीं रखाया हुआ हैं दो खिड़कियाँ भीं हैं और एक रूम भीं हैं।

यह एक घर है यहां अभी बनते हुए आप देख सकते हैं पेड़ पौधे दिख रहे हैं और फूल भी है।

यह पुलिस थाना है थाना कुमारी--